बहुत खुश नजर आ रहे हैं।

यह देखिए एक बरा सा होटल है और बाहर में देखिए--

यह देखिए संपत-चक पटना लिखा हुआ है।

दीवाल जो है काफी अच्छी है और--

बहुत सारे पेर पौ --

यह देखिए यह एक बहुत बरा मॉल दिखाई दे रहा है।

लाइट भी लगी हुई है ताकि नाम अच्छे से--

एक घरी भी लगी हुई है।

यह देखिए एक कार सर्विस सेंटर है।

ऊपर की ओर रखी गई है।

वस्तुएं मिल रही है।

जिसपे सामने लिखा हुआ है स्नैक बार ।

जो कि काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।

तुलसी चौरा भी बोला जाता--

यह देखिए बहुत बड़ा मैरिज हॉल है।

या इसको पार्टी हॉल भी बोला जाता है।

और यहां पे देखिए--

कुछ लोग बैठे हुए हैं।

एक स्लाइड पे एक बच्चा--

होटल है और यहां--

पे सामने एक मिरर है।

जो कि जेंट्स हैं वो खड़े हैं।

यह बरा सा कॉलेज है।

बाहर की ओर आते हुए--

से बनी हुई सारी वस्तुएं मिलती हैं।

यह देखिए बहुत बरी दुकान है।

बहुत सारे खिलौने भी दिखाई--

और जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है।

ये देखिए ये क्या है साइबर कैफ है और यहां पे एक आदमी--

काफी अच्छा बुद्ध का प्रतिमा है।

जो कि पत्थर से बनी हुई है।

और बाहर भी बहुत अच्छी--

यह देखिए यह एक मंदिर है।

यह देखिए एक आदमी है जो कि खरा है।

पीछे भी कुछ लोग काम--

यह देखिए बहुत पुराना--

और भी दो चेयर पीछे--

वो भी काफी अच्छे--

भरी भरी लग रही है और--

एक पीर भी --

से दिखाई दे--

दे रहा है जो कि--

पानी से पूरा भरा भरा।

काम कान जगह है।

बैठ के अपना वर्क कर रहे --

अच्छी लग रही।

यह एक फैक्ट्री है।

और यहां पे वर्कर लोग।

और एक बहुत बड़ा।

जो देखिए यहां पर।

और दोनों साइड से।

सीधी है और यह न्यू ।

सजा हुआ दिखाई।

और यह ग्रीन।

यह एक बहुत।

रोड रोलर भी।

दिखाई दे।

और एक आदमी बाहर।

जिसका नाम मम्मी ।

जो कि यह वेदी।

शाम का समय--

की शॉप है।

जो घर बने हुए हैं।

वो भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं।

की ओर शीशे में--

और एक व्यक्ति पीछे--

स्टेज है जिस पे--

लग रहा है।

और यहां पे--

और दोनों साइड --

चेक कर रहा है कि--

जो कि बिना पेन --

और यह बिल्डिंग का--

पेड़ भी ग्रीन --

और कुछ चेयर --